इस इमेज में बहोत सारी औरतें हैं और उसपे लड़कियां है।

ट्रैक्टर पर भूमि पुत्रा लिखा हुआ है और एक बाल्टी है।

एक छोटा बैग भी है और एक दो डोर हैं यहां पर।

सारी घास बिछी हुईं है और टाइल्स भी लगी हुई हैं।

इस इमेज में बहुत बड़े बड़े पेड़ है और उधर दीवार भी है और एक टेंपो भी है।

फोन पे के स्टीकर्स लगे हुए हैं बहोत सारे।

और टाइल्स भी लगे हुए हैं।

एक मोटरसाइकिल पर आदमी बैठा हुआ है।

बहुत सारी टाइल्स है भी हैं बहुत सारे और इसमें।

जयवीर बहुत सारी मूर्तियां हैं और विंडो भी है।

इस इमेज में एक कमरा है और उसमें कमरे में बहोत सारी मशीने रखी हुई है।

बहोत सारी छोटी छोटी बॉटल रखी हुई है यहां पर।

इस इमेज में एक जगह है जहा पर बहोत सारा पानी बह रहा है ऊपर से और नीचे पानी इकट्ठा हो रहा है।

और पर्दे हैं लाल कलर के और एक आद एक लुगाई बैठी हुई है बहुत सारे वायर है।

और एक कैमरा लगा हुआ है।

अलग अलग नाम की बुक रखी हुई है अलग अलग कलर की बुक है यहां पर और एक प्लास्टिक की चेयर है।

और बहोत सारी बुक हैं एक माउस है।

और बहुत सारी रेड कुर्सियां बिछी हुई हैं।